मुझे इस फोटो में एक पार्क दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक हाथी वाला फुहारा दिखाइ दे रहा है।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

मुझे इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में बैलून की सजावटें दिखाई दे रही हैं।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

मुझे इस फोटो में हितकार्नी महिला महाविद्यालय का बहोत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो मे एक रोड दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में कुछ पंखे और लाइटे दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में दो रोड दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में कुछ जानवरों के झुंड दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे जिम की बहुत सारी मशीनें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा हैं।